सामने एक लाल कलर का बोर्ड भी दिखाई दिया इसमें कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है।

कुछ दवाइयां और शैंपूस वगैरा नजर आ रहे हैं आयुर्वेदिक के--

लाल कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें एग्रीकल्चर मशीन लिखा हुआ नजर आ रहा है।

एक रेड कलर का कुछ डिजाइन बना हुआ जिसमें पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है।

सामने पिंक कलर का दीवाल दिखाई दे जिसमें नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ हैं बोर्ड में श्री मान हरिहरदास उच्च विद्यालय लिखा हुआ--

सामने पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर के बोर्ड मे इंडियन ऑयल लिखा हुआ नजर आ रहा है पेट्रोल पंप की मशीने दिखाई दे रही है कार रखा हुआ नजर आ रहा है।

बिलारी टाइप का बना हुआ है।

जिसमें पीले कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है दो टंकी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक फ्रिज दिखाई दे रही है जिसमें भीड़ लगी हुई दिखाई दे रही हैं हैं।

यह एक बड़ा स्विमिंग पूल है यहां जिसमें रेड कलर के बैलून दिखाई दे रहे हैं लाइट फोकस लिखा हुआ है बहुत सारा हरा पिंक कलर का।

नीले रंग का दरवाजा नजर आ रहा है एक लाइट कलर की पीली पेप्सी लिख हुआ नजर आ रहा है।

एक घर दिखाई दे रहा है जमीन में कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे हैं।

पिलर बने हुए हैं पांच छह ठो भुरे रंग के खूब सारे टेबल दिखाई दे रहे हैं लाल रंग की चेयर नजर आ रही है।